साइड बहोत सारे ठेले वाले भी लगे हुए हैं।

इसमें कि विकेट भी खड़ा हुआ है और जो पेंट्स है जो--

और काउंटर पे बहोत सारे बर्तन भी रखे हुए हैं।

और नीचे में कुछ लोहे जैसा है डम्बल जैसा वो पड़ा हुआ है।

और स्कूल के आगे में एक मोटरसाइकिल भी खड़ी है।

इस इमेज़ में हमें एक ख़ाली सा स्टेज शो दिख रहा है।

जोकि एक हॉल जैसा है और बहुत सारी कुर्सियां भी लगी हुई हैं।

और एक लाइन तो बिल्कुल सीधी दिख रही है जो की बिल्कुल भी खाली है।

जोकि सामने में हमें दो बसे दिख रही है जो इसमें से--

और एक पानी का गैलन भी रखा हुआ है।

से बहोत सारी लाइटे लगी हुई हैं रंग-बिरंगी लाइटें हैं।

के पीछे में पीले कलर का जनरेटर है।

और यहां पे एक साउंड भी दिख रहा है।

और उसी से पईरे एक क्यू_आर कोड भी चिपका हुआ है।

और पेन भी रक्खे हुए है और इधर साइड में एक टेबल है एक कुर्सी है और पीछे एक पंखा भी रखा हुआ है और एक टेबल बाहर भी रखा हुआ है।

इस फोटो में भी बहुत सारी एल_सी_डी टी_वी दिख रही है।

इस फोटो में हमें सामने की तरफ बहुत बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है दरबार का।